यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

दुकान में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह साम का फोटो है।

यहा पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

होटल बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है।

होटल के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है।

होटल के चारों तरफ लाइट भी लगी हुई है।

यह पंडाल के अगल बगल बहुत सारे घर है।

यह दुर्गा पूजा का पंडाल है।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

दुकान के सामने बहुत सारे बाल्टी रखे हुई है।

यह एक भवन निर्माण का दृस्य है।

ट्री एकदम हरा भरा है।

दुकान के बगल में बॉम्बे स्टार टेलर नाम की भी एक दुकान है।

यह एक दुकान का फोटो है।

दुकान के सामने एक पेड़ भी लगा हुआ है।

यहां पे बाल्टी भी रखा हुआ है।

दृश्य का दीवाल का पेंट व्हाइट है।

यह एक प्रोग्राम का दृश्य है।

बहुत सारा बैठने के लिए चेयर भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग आगे की ओर देख रहे हैं।

यहां पर और भी लोग बहुत सारे इकठ्ठा हुए हुए हैं।

यहां पे एक गाड़ी हुए खड़े हुए हैं।

घर के बगल मे अमन आम का पेड़ है।

घर के सामने एक रोड भी क्रॉस किया है।

दुकान के सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है।

यह एक होटल का दृश्य है।

यहां पर एक बंदा बैट पे बैठा हुआ है।

ये दूर एक घर बना हुआ है।

यह एक टॉवर का दृश्य है।